यहाँ एक छोटा रोड है और ग्रीन कलर के छोटे छोटे झाड़ है और बड़े बड़े पेड़ है और पानी है और एक उह घर है और सीढियाँ है और पीछे बड़ा बड़ा पहाड़ है आसमान है।

यहाँ एक बड़ी बिल्डिंग है श्री मोहन नाम लिखा हुआ है

यहाँ एक पोस्ट ऑफ़िस दिख रही है उस पर लाल कलर का पेंट मारा हुआ है और एक खिड़की है और एक पोस्ट बॉक्स है|

यहाँ कुछ कंस्ट्रक्शन का घर दिखाई दे रहा है और बोहोत सारे आयरन का काम लगा हुआ है और पीछे बहुत सारे झाड़ दिखाई दे रहे है|

और एक बोर्ड लगा हुआ है बोर्ड पे एक ग्रीन कलर का झाड़ बना हुआ है और एक येल्लो कलर का पेपर लगा हुआ है और एक पिंक कलर का पेपर लगा हुआ है और एक ग्रे कलर का पेपर लगा हुआ है एक विंडो है।